यहां पे बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है आगे में एक ए_सी लगाया हुआ है।

एक फोन निकाल के फोटो सेल्फी ले रहा है आईना में दिख रहा है।

और यहां पे एक आदमी फोन से बात कर रहा है।

यहां पे बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग के साइड में एक पेड़ भी दिख रहा है।

और यहां पे एक बच्चा खड़ा है जो पैंट पहना है और एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है।

और ये नीचे में बहुत सारा हरा घास है।

एक आदमी कुर्सी पर बैठा है जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहाँ आगे में गिट्टी दिख रहा है।

यहां पे बहोत सारा सामान दिख रहा है सीसा के अंदर में कोई डिब्बा में सामान रखा है।

और यहाँ पे बहुत लकड़ी का समान दिख रहा है।

आदमी ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ जा रहा है और उसके साइड में एक मोटर साइकिल खड़ा है।

पे एक बड़ा सा घर दिख रहा है।

एक आदमी अंदर बाहर आ रहा है और बहुत सारा आदमी अंदर में भी है।

यहां पे बहुत सरम आदमी दिख रहा है।

यहाँ पे खिड़कि है खिड़कियाँ का गेट खुला है।

और यहां पर खिड़की के पास एक शर्ट टांगा हुआ है।

और यहां पे एक लेडीज बाहर में है।

साइड में कुरकुरे का पैकेट रखा हुआ है।

ऊपर में बहुत सारा डिब्बा भी रखा हुआ है।

बहुत सारा बल्ब भी लगाया हुआ है।

यहां पे बहुत सारा फुल भी लगाया हुआ हैं।